ये फल्ली की चटनी है केला का पत्ता है और एक प्लेट है | व्हाइट कलर की दो गिलास है बाजू में एक पीला कलर का है वो रक्खा वो है | नीचे ब्लैक कलर का है नीचे हरा कलर का है ।

फूल की दुकान है। बहुत सुंदर है। यहाँ गेंदे के फूल हर किस्म के फूल मिल रहे हैं। यहाँ हरियाली बहोत है। बहोत सारे लोग फूल लेने के लिए व्यस्त है और यहाँ पर बहोत सारे --

एक यह टमाटर का पेड़ है। इसमें खाद दे रहे हैं। दो लोग है एक डिब्बा पकड़े है। नीचे एक जमीन है। ऊपर आसमान है और टमाटर उग रहे हैं।

तीन लोग है यहाँ खाना बन रहा है। राइस बन रही है और तीन लोग है पीछे हरियाली है लाइट जल रही है दो टॉवर है। और पीछे बहुत अच्छी सुबह आने --

और थोड़ा सा पाइप रखा है पीछे-पीछे तार लगे है और तीन बोरी हैं और नीचे जमीन है ऊपर आसमान है। नाईट का वक्त --

ये दो कपल्स हैं। ये दोनो एक घूमने वाली जगह में आए हैं। इनने पिंक कलर के कपड़े पहनी चश्मा लगाई है और मौजे पहनी है।

हाउस बन रहा है दो लोग खड़े है पोस्टर लेके नीचे दीवार है ऊपर आसमान है एक टंकी है ऑर दिवाले है लकड़िया है और तीन फ्लोर का वो है। दो इंसान हैं।